यह तस्वीर पहाड़ के ऊपर से ली गई तस्वीर है दिन का समय आसमान भी एकदम साफ है आस - पास बहुत सारे --

चारो तरफ वृक्ष दिख रहे हैं वृक्ष के सामने मे नदी है नदी मे बहोत सारे पानी है पानी के सामने मे एक झोंपरी टाईप दिख रहा--

जी ये यहाँ पे कुछ ट्रक कुछ गाड़ी दिख रही है कुछ बिजली के खम्बे भी नजर आ रहे है दिन का समय है।